बच्चों के कपड़े बच्चों के झूले और बच्चों के खिलौने भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पे बाहर की ओर बहुत सारी कारें भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

दो बड़े पिलो रखे हैं। दो छोटे पिलो रखे हुए हैं।

किसी बिल्डिंग के सामने की खाली जगह की फोटो दिखाई दे रही है।

नदी के बीच में बहोत ही कम पानी नजर आ रहा है यहां पे बोहोत सारे छोटे पत्थर भी रखें हुए हैं।

यहां पे एक चबूतरा बना हुआ है जिसपे कबूतरों को दाना भी डाला हुआ नजर आ रहा है।

कुछ ऑटो में सवारियां बैठी हुई भी दिखाई दे रही है ये शायद ऑटो की पार्किंग है।

ये किसी दुकान की फोटो दिखाईं दे रही है।

जहां पे एक बड़ा सा सफेद काउंटर बना हुआ है जो कि कुछ डिजाइनदार काउंटर है।

यहां पे एक दो टेबलें लगी हुई है जिसपे एक बूढ़े अंकल और एक आंटी भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पीछे की ओर बहोत सारे हर भड़े पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ बड़ी बड़ी लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही है।